यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है। बहुत बहुत बड़ी रोड है। यहाँ पर यहाँ गाड़ियाँ है। बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं। छठ माईया की पूजा हो रही है। उसका पूरा पंडाल लगा हुआ है। खुला हुआ असमान है।

ये शिव लिंग देखने में बोहत ही प्यारी और बोहत ही अच्छी लगी है। यहाँ फूलों की माला इसपे चढाई गई है जो देखने मे बोहत ही अच्छी है और बोहत ही खूबसूरत है और हमें शिव जी की पूजा रोज --

इसमें यहाँ बहुत सारी बेंचेस रखी जैसा कि हम देख सकते हैं बेंचेस एक कतार मे लाइन बन लाइन रखी है यहाँ चारो तरफ जो है ये दर मे ये कमरा जो यहाँ पर क्रीम कलर की पुताई हुई है।

जैसे कि हम देख सकते हैं यहां पर किसी का उत्सव चल रहा है यहां पर बहुत सारे लाइट्स लगी हुई हैं बहुत सारे दरवाजे और यहां पर देखने में यह चीज बोहोत ही प्यारी है।

ये इलेक्ट्रीशियन शॉप है छोटा सा जो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से रिलेटिड है यहाँ बहुत ही अंधेरा है यहाँ पर बोर्ड जो बहुत प्यारा और अच्छा लगा हुआ है।

देख सकते है यहाँ बोहोत (बहुत) बड़ा झरना है नदी है और यहाँ पर खुला हुआ आसमान है काले बादल है --

यहाँ छोटा-छोटे पेड़ पौधे जो देखने में बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं।